फल और ऊंचे हैं पेड़ों के बीच में बोहोत सारा गैप है और नीचे पत्तियों टूटी हुई पड़ी हैं।

नीचे घास भी पड़ी हुई है पेड़ों के ऊपर की तरफ बोहोत सारे पत्ते भी लगे हुए हैं।

यह एक गोदाम का फोटो है गोदाम के अंदर बहुत सारे बम के पैकेट रखे हुए है।

और हरे रंग के झंडे हैं नीचे बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

इन पैकेटों पे कुछ महिलओं के और बच्चों के फोटो बने हुए हैं।

सामने एक बगीचा है इसके चारों ओर --

इसके पीछे बहुत बड़े बड़े लोहे के कंटेनर रखे हुए हैं ।

दोनों तरफ कुर्सियाँ डली हुई हैं और सामने एक बड़ा सा मकान है जिसकी छत पे सफेद रंग का टैंक भी रखा हुआ है छोटे छोटे पौधे भी लगे हुए हैं।

है और तीन पेपर है जिसमें एक येलो एक वाइट और एक पिंक कलर का है साइड में एक विंडो भी है।